उसके ठीक ऊपर की साइड एक खिड़की लगी हुई है खिड़की के पास मे दो और बड़ी खिड़की लगी हुई है जोकि काँच की नजर आ रही है इसके ठीक कलर किआ हुआ है जोकि व्हाइट कलर की मल्टी है बड़ी सी --

ये जो दुकान है जोकि काँच की बनी नजर आ रही है इसके नीचे अंदर की साइक मे बहुत सारे बलून है जोकि काफी सुंदर है और अधभूत --

इसके ठीक ऊपर की तरफ में एक जानवर है। ये जानवर थक काफी अजीब नजर आ रहा है। ये जानवर चूहे की तरह नजर आ रहा है इसके ठीक नीचे की साइड में देखा जाये तो बोहत सारा खाना पड़ा हुआ है खाने के ठीक पास में एक लकड़ी पड़ी हुई है। लकड़ी के ठीक पास में एक स --

जैसे कि जैसे की अपने को नजर आ रहा है दुकान है दुकान के ठीक पास में काउंटर हैं काउंटर के ठीक ऊपर की साइड में एक बॉटल रखी हुई है।

जैसे की अपने को नजर आ रहा है की एक गार्डन बना है गार्डन के पास मे कई सारी घासे उग रही है घासो के ठीक पीछे की साइड मे एक जाली लगी हुई है जाली के ठीक पीछे की साइड मे मिट्टी है मिट्टी के ठीक --

जैसे की जैसे की अपने को दिख रहा है एक फैक्ट्री नजर आ रही है फैक्ट्री काफी बड़ी नजर आ रही है जोकि लोहे की नजर आ रही है उसके ठीक ऊपर की साइड दो कटोरे बने हुए ठीक उसके आस पास में --

इसके ठीक सामने के साइड एक ऑटो है। ऑटो ब्लैक कलर का ऑटो खड़ा हुआ। ऑटो के पास में दो आदमी हैं। दो आदमी के ऊपर एक पास खंबा लगा। खंबे के पास में कई सारे वायर लटके नजर आ रहे।

जोकि टॉवल रखते हुए अपना फोटो खींच रहा है जिसने कि फेस के ऊपर कुछ लगाया हुआ है। उसके ठीक आगे की साइड में चस्मा रखा हुआ है। चश्मे के ठीक पास में एक स्प्रे रखा। स्प्रे के ठीक ऊपर के साइड बड़े-बड़े दो बॉक्स बने हुए हैं।